यहां पर किचन बना हुआ है जिसमें की रेड वाइट कलर के बॉक्स बने है।

और पीछे मूर्तियां दिख रही हैं।

सामने ग्रीन कलर के यहां पर पत्ते दिख रहे हैं और कुछ रेलिंग्स लगी हैं।

पर्दा लगा हुआ है व्हाईट और ग्रीन कलर का टेंट --

पीछे व्हाइट कलर की से सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

टेबल रखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

बेड दिख रहा है वाइट कलर --

व्हाइट कलर की मोमबत्तियां जल रही है।

एक कार दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो --

येलो कलर की लाइट्स दिख रही है।

बहोत सारी कुर्सियां दिख रही है।

यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक पार्क ।

जोकि लकड़ी से बनी हुई है।

फ्लोर पर कुछ पत्थर लगे हुए हैं।

यहां पर हमें दिख रहा है।

पीछे की ओर ब्लू कलर का आसमान है।

सामने की ओर ब्लैक पर्दा लगा हुआ है।

और यहां पर टोपी पहन के एक व्यक्ति दिख रहा है।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

पीछे एक शॉप दिखाई दे रही है।

सामने येलो व्हाइट कलर से कुछ--